छड़ सब निकला हुआ है तार है।

यहां पे दुर्गा जी का पूजा हो रहा है दुर्गा जी है सरस्‍वती जी है बजरंग बली है।

यहाँ पे कुछ कैंपस है। कैंपस में भीड़ लगा हुआ है। कुछ लिखा हुआ है पता नहीं चल रहा है। साइकिल है पेड़ है उसके पीछे भी एक रूम है। ऊपर एलवेस्टर रखा हुआ है। चारो तरफ से बाउंड्री है।

पूरा कॉफ़ी कलर का सब बना हुआ है। बहुत सारा है।

दुकान में पोस्टर लगा हुआ है। बगल में ग्रे दुकान है। दुकान में ताला मारा हुआ है। उसके बगल में भी दुकान है ग्रिल लगा हुआ है ऊपर पेड़ सब है। पेड़-पौधा बहुत सारा पोस्टर लगा हुआ है।

सात आठ दुकान है। चार पाँच जीन्स है। बहुत सारा लाल उजला पीला माला है। टेबल रखा हुआ है। बहुत सारा आदमी है। बल्ब जल रहा है। सामान सब --